यहां पर लाइटिंग अच्छी लग रही है और यहां पर बहुत ही अच्छी साफ-सफाई है।

ये फोटो एक जंगल की लग रही है।

बंजर से लग रहे हैं और मिट्टी भी बोहोत ही रूखी सूखी दिख रही है।

और इसमें बहोत ही मतलब किसी की शादी हो या कुछ भी कार्य हो वो किया जाता है।

जिसका नाम होटल गेटवे कर्नाटक है और यहां पर--

एक लाइब्रेरी की बिल्डिंग दिख रही है।

और यहां पर एक पुलिस की--